एस_पी बा आ एस_बी बैंक है पोस्टर है आ स्कूटी है स्कूटर है कर्मचारी हे।

कोई आदमी बैठा हुआ है ऐको आदमी खड़ी हुआ है टोकरी है कुर्सी है टेबुल है खिरकी --